नीचे घर घर के बाजो है बॉक्स लिखा हुआ हे नीचे आपको बड़ा साइज रोड है |

ये पानी है पानी में बहुत काला पानी है पानी के बिच में--

बात कर रहा है अंदर आपको दो आदमी गाड़ी में जा रही है बहुत सारे अंदर खड़ा है इतना कुछ आना है उधर आपको मछली के नाम का घर है|

हमारे पहाड़ के छोटे-छोटे झाड़ है पहाड़ों के बीच में छोटे-छोटे झड़ रहे और हरे हरे रंग के हैं|